यहाँ पर वह कुछ कागज़ को काट कर कुछ आकृति बनाने का प्रयास कर रहे हैं।

साथ ही वहे किन्ही आकृतियां को बना रहे हैं।

हमें एक बस खड़ी हुई नजर आ रही है।

दी के उस तरफ हमें पेड़ो की एक संखला नजर आ रही है।

उसने नीले रंग की शर्ट पेहेने पेहनी है।

साथ ही हमें स्कूल के छात्र-छात्रायें भी दिखाई दे रही हैं।